installing an advanced theme पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम advanced theme install करना सीखेंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ ubuntu linux ऑपरेटिंग सिस्टम drupal 8 और firefox वेब ब्राउज़र आप अपनी पसंद का कोई भी वेब ब्राउज़र उपयोग कर सकते हैं
adaptive theme और omega 2 आश्चर्यजनक theme frameworks हैं
adaptive theme पर एक नज़र डालते हैं
ध्यान दें adaptive theme एक basic बुनियादी theme है
आपको adaptive theme के लिए एक subtheme उपयोग करने की ज़रुरत है
अब adaptive theme install करते हैं
आप जब यह video देख रहे हैं उसके आधार पर आप यहाँ पर हरे में drupal 8 भी देख सकते हैं
हरे वाले drupal 8 को लें और लाल वाले को नहीं
tar gz link पर rightclick करें
copy link विकल्प चुनें
अब अपनी website पर वापस आते हैं
appearance और install new theme पर click करें
यहाँ link paste करें और install पर click करें
अब हम इसे on नहीं करते हैं क्योंकि adaptive theme base theme है
अब subtheme pixture reloaded प्राप्त करते है
नीचे scroll करें और drupal 8 version पर जाएँ
जब आप यह tutorial देखते हैं तो यह यहाँ हरे section में आएगा
tar gz link link पर rightclick करें और copy link चुनें
site पर वापस जाएँ
install new theme button पर click करें
यहाँ link paste करें और install पर click करें
अब install newly added themes पर click करें
नीचे जाएँ
अब हमें adaptive generator और adaptive subtheme मिलेंगे जो pixture reloaded कहलाते हैं
install and set as default पर click करें
settings पर click करें
इसकी अपनी subtheme के साथ simple theme और basetheme में अंतर होता है
यहाँ लगभग सभी के लिए settings हैं
हम किसी भी बारे में बदल सकते हैं
उदाहरण के लिए हमारे पास हो सकते हैं responsive menus
google या typekit से fonts
titles के लिए अलग styles
image alignment
shortcode css classes
mobile blocksजो mobile यंत्रों पर blocks को छिपाने की अनुमति देता है
slideshows समर्थित हैं
touch icons custom css अधिक developer tools और ie 6 से 8 के लिए legacy browser settings
इन्हें सावधानी से उपयोग करें जब तक ज़रुरत न हो उन्हें enable न करें
बाएं panel पर extensions में हमारे पास हैं responsive menus fonts
article book page events के लिए image settings
यह उन सारे content types को पहचानता है
अब मैं events पर click करती हूँ
यह हमारे events content type में images को अलाइन करने की अनुमति देता है
उदाहरण के लिए क्या हम उन्हें हमेशा बायीं तरफ या दायीं तरफ रखना चाहते हैं
बाएं panel पर जाएँ shortcodes और markup overrides
यहाँ नीचे बहुत से विकल्प हैं
layouts और फिर page default पर click करें
wide विकल्प पर click करें
यह हमें block regions के साथ सारे लेआउट्स का setअप करने और यहाँ theme में media queries परिभाषित करने की भी अनुमति set है
हमें इसे ठीक से setअप करने के लिए कुछ समय चाहिए
color scheme पर click करें
बहुत सी पूर्वपरिभाषित color schemes हैं
लेकिन यदि आपको इसके साथ वाली थीम पसंद नहीं हैं तो आप खुद की color स्कीम बना सकते हैं
अंततः सामान्य basic settings हैं
यह हमारी drupal site के लिए आश्चर्यजनक base theme और subtheme है
हमने यहाँ वास्तव में कोई बदलाव नहीं किये हैं
लेकिन अपने होमपेज पर एक नज़र डालते हैं
home अपने होमपेज की एकदम नयी दिखावट देखते हैं
हमें structure में जाने की और block layout जाँचने की ज़रुरत है
हमने subtheme pixture reloaded उपयोग की है
यहाँ कोई भी sidebar regions नहीं हैं
जो कुछ भी pixture reloaded में है केवल इस तरह सूचीबद्ध होते है
हो सकता है कि यह हमारे प्रदर्शन के लिए बेहतर पसंद होती लेकिन आपको एक अंदाज़ा मिलता है कि यह कितना शक्तिशाली है
हम बस अंदर जाकर और advanced theming engine उपयोग करके उन सारे विकल्पों का setअप कर सकते हैं
वह वो theme framework हैadaptive theme और pixture reloaded
उन्हें अच्छे से समझने के लिए आप इनके साथ कोशिश कर सकते हैं
इसके साथ हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं
इसे सारांशित करते हैं इस tutorial में हमने एक advanced theme install करना सीखा
यह video acquia और os ट्रेनिंग से लिया गया है और आई आई टी बॉम्बे द्वारा संशोधित किया गया है
इस link पर उपलब्ध video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे download करके देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाएं चलाती है और प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए हमें लिखें
spoken tutorial project nmeict मानव संसाधन विकास मंत्रालय और nvli संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निधिबद्ध है